इसमें दो चट्टानें दिखाई दे रही हैं चट्टानों पर ग्रीन ब्लू येलो पिंक कलर दिखाई दे रहे हैं।

इसमें होम और की दिखाई दे रहा है।

सात लेडीस खड़ी हुई है इनमे से छ सेम ड्रेस मे और एक अलग ड्रेस मे खड़ी है।

इस इमेज में पुरानी सी सड़क और एक मकान नजर आ रहा है बस बार दिखाई दे रही है और कुछ लोग नजर खड़े हुए नजर आ रहा है बस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है।

इस इमेज में पुरानी सी मूर्ति दिखाई दे रही है जो श्री राजा जगतपाल जी की है और एक पुराना सा मकान नजर आ रहा है।